में एक बड़ी छत दिखाई दे रही और काम चलता दिख रहा है छत में छत डलती नजर आ रही है पीछे की तरफ हरित और नीला आसमान और आस पास बहुत सारे मजदूर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे है।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

पेड़ दिखाई दे रहे है सामने बहुत सारे खड़े दिख रहे है पीछे की तरफ भी--

पीछे की तरफ एक कमल दिखाई दे रहा है सामने की तरफ एक महिला खड़ी दिख रही नीचे की तरफ एक ऑटो पे व्यक्ति अत्रक का दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति औरत को चाबी देता दिखाई दे रहा है ऐ बेटरी वाले ऑटो के जेसे ही इस औरत ने बेटरी वाला ऑटो ख़रीदा है।

पीछे की तरफ बहुत सारी गाड़िया खड़ी दिखाई दे रही है सामने की तरफ लाल रंग का शेड और पर्दे डले नज़र आ रहे है नीचे की तरफ एक बड़ी चाबी दिखाई दे रही है।